वहाँ रोड पर एक व्यक्ति चल रहा है दुकान के ठीक पीछे एक घर बना हुआ है घर में चैनल लगा हुआ गेट लगा हुआ है चारों तरफ--

ऊपर छत पे बहुत सारे रंग-बिरंग बैलून लगे हैं पंखे भी लगे हुए हैं।

यह एक दीवाल है दीवाल पर उम बहुत पुरानी-पुरानी पिक्चर बनी हुई है पिक्चर रंग-बिरंगी है कुछ सादे कोई ब्लैक कुछ ब्लैक --

कलर के कुछ ग्रीन है ऊपर दीवाल में खम्भे बने हुए हैं।

यह रोड है रोड के दोनों कोनो में तरफ नारियल के एं ताड़ किए वृक्ष लगे हुए हैं वृक्ष सफेद और--

फूल रंग-बिरंगें है चारों तरफ से बहुत सारे पेड़-पौधे भी हैं।

एक मकान बना है मकान में रंग-बिरंगे पर्दे लगे हुए--

ग्रिल में कटीले तार से चारों तरफ से घेरा गया है बगल में गेट भी दिखाई दे रहा है बोर्ड पे लिखा गया है।

यह हॉलनुमा जगह है यहाँ पे खम्भ दीवाल है दीवाल में रंग-बिरंगी है दिखाई दे रही है।

यह हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चों को एडमिट करने वाला ये साब सा--

स्ट्रेचर है यहाँ पे छो वाशिंग में बच्चों को रखा जाता है।

हाथ में अमरूद लटके हुए हैं नीचे कुछ काली-काली चीज जमीन पर पड़ी हुई है अगल-बगल भी बहुत झाड़ियाँ हैं पेड़-पौधे भी हो सकते हैं ये।

कमरे में एक तरफ दरवाजे और खिड़कियां हैं एक दरवाजे खिड़कियां प पर्दे लगे हुए हैं बेड के ठीक सामने टी_वी है बैक में ब लाइट भई है।

बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं खड़े हो अं सामने सामान ले रहे हैं।

सड़क के ठीक सामने एक बहुत बड़ा मकान हैं मकान के बाहर बहुत सारे शो प्लांट लगे हुए हैं।

लाइट भी जल रही है गमले में छोटे छोटे पौधे भी हैं चारों तरफ से खिड़कियां दिखाई दे रही है ऊपर छत पर झंडा भी लगे हुए हैं।

के किनारे टीन का शेड लगा हुआ है टीन के शेड के नीचे साइकिल इस --

कुछ लिखा गया है ठीक उसके सामने भी एक बोर्ड है उस पे भी कुछ लिखा गया है।

दुकान के पीछे झाड़ी भी पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है बगल में भी है।

यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे लेडिज लोग लोग और जेंट्स लोग भी आए हैं यहाँ बहुत सारे रंग-बिरंगे के पेड़-पौधे हैं यहाँ सामने एक--

यह एक स्कूल है स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों मेज पे अपना-अपना वर्क कम्प--

पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं पीछे खिड़कियाँ लगी हुई हैं खिड़कियों में लोहे लगे हुए हैं --

पेड़ भी है पेड़ रंग-बिरंगे हैं चारों तरफ से बहुत सारे फूल से सजाया गया है।

यहां रोड के किनारे बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं बगल में एक मशीन रखा गया है मशीन के चारों तरफ दीवाले दीवाल है।

यह नदी है नदी में दो व्यक्ति खड़े हैं दोनों व्यक्ति पानी में खड़े हुए हैं दोनों व्यक्ति के पीछे--

एक व्हाइट कलर से ब-बनाई गई हैं मूर्ति है।